में टीन शेड डला हुआ है और बहोत सारा लड़कियों का सामान भी रखा हुआ है।

यह चित्र चिड़ियाघर का हैं इस चित्र में मुझे--

इस चित्र में टीन शेड डला हुआ है।

बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में मुझे धूप भी खेत पर पढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहोत सारी बाइक खड़ी हुई हैं।

यहां पर मुझे एक कार खड़ी हुई दिख रही है।

इस कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं।

इस चित्र में प्लास्टिक का सामान की दुकान दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक इंसान ने कॉफी का मग पकड़ा हुआ है।

इस चित्र में मुझे रुद्र मोटर्स का नाम भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में बहुत सारी वकील की पुस्तकें रखी हुई है।